दीवारों पर तस्वीरें लगी हुई हैं।

जालियों पर दीवार पर लगी हैं।

गाड़ियां खड़ी हुई दिख रही है।

जिसमें एक टी_वी लगा है।

जमीन पर खूबसूरत पत्थर लगा हुआ है।

कुछ रंग बिरंगी झंडे लगे हैं।

मिट्टी और पत्थर दिख रहे हैं।

ये एक घर की तस्वीर है।

कांच में कुछ तस्वीरें लगी हुई हैं।

लंबी सी गली है।

जिस पर बैनर लगा हुआ है।

मिट्टी की जमीन दिखाई दे रही है।

जिससे पैसे निकाले जाते हैं।

जिस पर ए_टी_एम लिखा हुआ है।

इमारत के नीचे गाड़ी खड़ी हुई है।

छत के ऊपर दो लाइटें लगी हैं।

बहुत अच्छी लाइटें जल रही हैं।

ये किसी दुकान की तस्वीर है।

कपड़ों की दुकान का शोरूम है।

जिसमें बाहर बहुत सी गाड़ियां खड़ी हैं।

बिजली का बड़ा सारा खंबा लगा हुआ है।

यह तस्वीर एक कैफे की है।

कांच का दरवाजा लगा हुआ है।

जहां पर लोहे का घोड़ा बना हुआ है।

यह एक मैदान है जहां पर बच्चे खेलकूद कर रहे हैं।